एक ऑफिस दिख रहा है जिसमें दो लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

पर एक बड़ी भगवान बुद्ध की फोटो है।

गुंबद के चारों तरफ भी बहुत सारी कला कृतियां बनीं हुई हैं।

उसके ऊपर एक भारत का झंडा भी छोटा सा बना हुआ दिख रहा है।

दो डमी ने लंबा कुड़ता पेहना है एक ने छोटा पेहना है।

उसके ऊपर जय मां लिखा हुआ है चार आदमी दिख रहे हैं।

कमरे के दीवार पर एक हैंगर लगा हुआ है हैंगर में एक पैंट टंगी हुई है।

सामने टीन लगी हुई है ऊपर अलग बहुत सारे तार के गुच्छे जाते हुए देख रहे हैं।

यह किसी पार्क का दृश्य है पार्क में बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

एक चबूतरा बना हुआ है चबूतरे के ऊपर चार पिलर हैं जीसके ऊपर छत पड़ी हुई है।

इसके नीचे एक मूर्ति लगी हुई है जो सुभाष चंद्र बोस की है।

कुछ आदमी भी खड़े हुए दिख रहे हैं एक आदमी ऑटो चलाता हुआ दिख रहा है।

बेकरी में काउंटर है। काउंटर के अंदर कुछ केक रखे हुए दिख रहे हैं।

स्कूली बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हुए दिख रहे हैं बच्चों के सामने एक मेज रखी हुई है।

इसमें एक मिठाई का काउंटर रखा हुआ है उसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की मिठाइयां रखी हुई दिख रही हैं।

गणेश भगवान की मूर्ति दिख रही है।

गणेश भगवान की मूर्ति के सामने एक आदमी बैठा हुआ है।

नीचे श् हरे कलर की कारपेट बीछी हुई है और गणेश भगवान की मूर्ति के सामने कुछ झालर लटती हुई दिख रही हैं।